ओर सड़क पर एक गाड़ी खड़ी हुई है उस गाड़ी का रंग सफेद ओर ऑरेंज हे । उस गाड़ी पर अभे ईखा हुआ हे ।

सामने एक चित्र दर्शाया गया है उस चित्र के के-उ में एक गाड़ी खड़ी हुई है और गाड़ी पर अशोक लिखा हुआ हे ।

सामने एक चित्र बना हुआ है वो चित्र में एक कोलीज है।

सामने एक चित्र है | चित्र में गाड़ियाँ खड़ी हुई है ।